चित्र में मुझे एक शॉप दिख रही हैं।

चित्र में मुझे आइसक्रीम और केक शॉप दिख रही है।

चित्र में मुझे बाइक खड़ी हुई दिख रही है।

चित्र में मुझे सब्जी व फ्रूट की शॉप दिख रही है।

चित्र में मुझे रोड से जाता एक टैंकर दिख रहा है।

चित्र में मुझे बिजली का खंबा दिख रहा हैं।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

चित्र में मुझे एनिमल हॉस्पिटल दिख रही है।

चित्र में मुझे कुर्सी रखी हुई दिख रही है।